इसमे कप मे चाय दिख रही है पीछे घर दिख रहा है खुला आसमान है बहुत ही अच्छा माहोल दिख रहा है यहा का।

यह एक कपड़े कि दुकान दिखाई दे रही है जिसमे बच्चों के लिए खरीदने योग्य बहुत ही--

यहा पर बहुत सारी बाइसिकल दिखाई दे रही है दो तीन जैंट्स खड़े हुए दिखाई दे रहे है और यह बायसायकल की दुकान दिखाई दे रही है जहा पर शायद एक व्यक्ति से खरीद भी रहे है।

तेजा बूक स्टॉल है यह जहा पर एक कस्टमर आए हुए है।

और उसके हात मे एक नट वगैरा कुछ है जिससे वह जोड़ने की कोशिश कर रहा है।

एक लेडिज भी बेठी हुई है पीछे दो जेन्स ऐसे सड़क पर चलते हुए दिखाई दे रहे है।

और दो लड़के खड़े हुए है और गणेश जी कि तस्वीर दिखाई दे रही है टी_वी स्क्रीन पर।